टैटू स्टूडियो के बाहर--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

दरवाज़ा खोलते हुए दिख रहा है।

एक टू व्हीलर एक्टिवा खड़ी हुई है।

और सामने की तरफ एक--

महल में गोल मेहराब के डिज़ाइन बने हैं।

और बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है।

सामने बहुत सारी रेत और धूल जैसी पड़ी हुई है।

यहां पर रेड कलर के कालीन बिछे हुए हैं।